जो की ब्लू और ग्रीन कलर का है इस पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ए_टी_एम ।

यहाँ हमको ब्लू कलर की पट्टी और उसके अंदर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

येलो कलर से पुती हुई है और साइड में यहाँ व्हाइट कलर के खंभे भी हमको दिखाई दे रहे हैं।

और उसके साथ एक चटनी भी रखी हुई दिखाई दे रही है जो कि ग्रीन कलर की है। नीचे ग्रीन कलर --

-- और यहा एक बलब भी लगा हुआ है नीचे एक रलिया रखी हुई है और यहा एक--

--ले रहा है यहाँ नीचे और एक लोटा रखा हुआ है और एक थाली में रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

और पीछे एक घर टाइप बना हुआ है उसपे प्लस का निशान बना हुआ है साइड में एक टेन्ट लगा हुआ है टेंट के उस साइड में एक घर बना हुआ है।

यहाँ हमको छे भैया दिखाई दे रहे हैं।

जो कच्चा सा दिख रहा है पीछे इनके पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ हम को माता रानी दिखाई दे रही है जिन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पेहनी हुई है उनके पीछे और साइड में बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं।

यहाँ हमको अनार जलता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट साइड में यहाँ बहोत से --